में एक बिल्डिंग देख ने को मिल रही है जो की काफी अच्छी लग रही है और उसमे बहोत सारी विंडोज़ मे ए_सी ज़ लगे हुए है काफी सारे।

यहाँ हमे एक वाल देखने को मिल रही है जो की रैक्स बना रखे है ग्लास के उसके ऊपर कुछ आह बड़े प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स रखे हुए है।

इसमें हमें अ एक बहुत ही बड़ा सा एक बोर्ड ब्लैक बोर्ड देखने को जैसा मिल रहा है हमें और उसपे कुछ इंग्लिश और अ न्यूमेरिकल लेटर्स में कुछ लिखा हुआ है नीचे की तरफ डेकोरेशन कर रखा है फ्लॉवर्स के थ्रू ।

और नीचे का अ ग्रीन कार्पेट है जहाँ पर अंदर के तरफ लोग कुछ जा रहे है।

हम एक रूम को देख प्र है जो कि बेस्ड है पिल्लर वगेरा के और दीवारों के बेस्ड पे खड़ा है और फर्श हमे बिल्कुल टाइल्स का देखने को मिल रहा है अरेंज फॉर्म में वहा पर अ- बाइक्स लगी हुई है।